यहां पर बहुत से व्यक्ति चड्डी पहनकर नहाते हुए भी नजर आ रहे हैं।

और वहां पर बहोत से पोस्टर भी लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक कमरे का आंतरिक भाग दिखाया गया है।

इस चित्र में एक किराना स्टोर दिखाया जा रहा है।

जोकि सफेद कलर की है।

इस तस्वीर में किसी भवन का अंदर का दृश्य दिखाया जा रहा है।

जहां पर बहुत सी खाने पीने की वस्तुएं हैं।

और उसके सामने एक सफेद और लाल कलर का इमारत भी नजर आ रहा है।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

जो की लाइट से सजाया गया है।

जो कि इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर काम के लिए है।

कोने में एक काले कलर का मोटर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मकान सफेद कलर का है।

दीवार के सामने कुछ गमले भी है जिसमें कुछ पौधे लगे हुए हैं।

इसके सामने बहुत सारे अलग अलग कलर के मकान भी है।

ये ठीक सामने एक काले कलर का कार भी खड़ा हुआ है।

और टेंट में बहोत से एंट्री गेट भी बनाई हुई है।

यहां पर बहोत सारी कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

वेटिंग हॉल पर एक रिसेप्शन डेस्क भी है।

जहां पर बहुत सी अलग अलग प्रजातियों की मछली बिक रही है।

और बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई दे रहा है।

जो कि घर बनाने का काम कर रहे है।